और जो कि लुक बोहोत अच्छा दिखाई दे रहा है। बाहर पेड़-पौधे हुए हैं। हरा-हरा लिक दिख रहा है। इतना मस्त लग रहा है। बोहोत ही अच्छा लग रहा हुआ है।

ब्लैक कलर की वाइट कलर की बहुत सी दी दु बूके दिखाई दे रही हैं लाइब्रेरी --

बहुत सुन्दर दिख रहा है वहाँ एक तोरण बना है रेड कलर का बहुत सुन्दर तोरण लग रहा है और संग्राम भगवान का पूरा मंदिर बना है तीन --

उन्हें मछलियां दे रही है इधर जेंट्स भी दिखाई दे रहा है बहुत लोग इन्होंने भी मास्क लगा है बहुत से लोग --

यह एक सैलून दिखाई दे रहा है जो की एक लड़का फोटो खींच रहा है उसके फेस पर कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है उसका चश्मा भी वही रखा है।

वहाँ बहुत से बच्चे लोग दिखाई दे रहे है एक रूम में पेंटिंग कर रहे हैं ड्राइंग कर रहे है और पिंक कलर की दीवाल दिखाई दे रही है कई लोग ड्राइंग बना रहे हैं ।

वहाँ एक चौधरी भैया की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ कि किराना वाले दुकान दिखाई दे रही है बहुत सारी किराना की सामान दिखाई दे रही हैं ।